जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इस--

और यहां पर--

इस फोटो में देख--

बहोत बड़ी चीज है।

बहुत सारे लोग आते हैं और यहां पर बहुत ज्यादा।

तो जैसा कि आप देख--

फोटो में देख सकते हैं यहां पर एक--

और यहाँ पर पार्क बना--

सकते हैं यहां पर एक--

बहोत सारी प्लांट्स लगाए गए--

सकते हैं यहां पर बहोत बड़ी--